और उसका रंग सोने रंग में है और चमकदार है नीचे में चार व्यक्ति बैठे हुए नज़र आ रहे है और उस मूर्ति को छू रहे है ऊपर में कुछ काला-काला गोल-गोल दिख रहा है।

--लगी हुई है और पीछे में एक फैन भी है नीचे में बैठने के लिए कुर्सी सब है लोग बैठे हुए हैं।

और कुछ बड़े भी दिख रहे है दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा।

कुछ कच्चे सड़के पे खड़े हुए नज़र आ रहे है और बुजुर्ग व्यक्ति लोग भी कुछ बच्चे लोग ऊपर में खड़े नज़र आ रहे है और अपने बालों में गजरा लगाए हुए है और हवन कर रहे है जैसे दिखाई दे रहे है जोकि धुआँ उठ रहा है।

यहाँ एक ऑफिस है जिसके ऊपर में ऑफिस ही लिखा हुआ है उसके दरवाज़े सब काँच के है और सब दरवाज़े बंद है उसके अंदर में बहोत सारे उपकरण भी दिखाई दे रहे।

यह एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसके--

--भाग में भी मूर्ति सब दिख रहे है और नीचे में भी मूर्ति है फूलो से बहुत अच्छे से हर जगह को सज़ाए हुए है बहुत बड़ा दरवाज़ा है उस दरवाज़ा में इंसान लोग--

यह एक पंखा के ढेर है जो की जमीन पे है।

उसके किनारे में एक स्कूटी भी खड़ी हुई नज़र आ रही है किनारे में दो-तीन साइकिल भी है और बोरी के बहोत सारे ढेर लगे हुए है उसके किनारे में एक स्टूल भी छोटा-सा दिखाई दे रहा है और कुछ है।

और एक कुर्सी भी लगी हुई है और कुछ दूर में दरवाजा सब भी है जो की काँच के है और कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे है सीढ़ी भी बगल में है।

यह रात का समय है जोकि व्यक्ति लोग पूजा हवन करने जा रहे है।

यहाँ बहोत बड़ा टावर दिखाई दे रहा है जो की इस टावर का कंपनी है जो बहोत ही लंबा चौड़ा है हसके हर ऊपर में कुछ छतरी--